और दो रुमाल रखे हुए हैं जिसके एक रुमाल के ऊपर ब्रेड रखा हुआ है एक लड़का चाय पी रहा है और एक लड़का दिखा रहा है।

ये फोटो बहोत ही अच्छी जगह खींचा हुआ है।

इस फोटो के पीछे एक झूला लगा हुआ है जिस पर आदमी सवारी कर रहे हैं। इस फोटो में बहोत ही अच्छा मौ --

यह फोटो एक फैक्ट्री का खींचा हुआ है। इसमें एक आदमी खड़ा हुआ है।